सामने में एक छोटा सा गुमती भी दिख रहा है।

सामने लाइटें भी लगी हुई हैं।

इस दृश्य में कॉफी बनाने का मशीन दिखाई दे रहा है।

यहां पे घने पेड़ भी दिख रहे हैं यहां पेड़ के नीचे में एक बूथ भी है।

यहां घने भने पेड़ दिख रहे हैं।

यहां बिल्डिंग पे रोहिणी मोहिनी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

इस दृश्य में ग्रीन रंग के नेट का घर बना हुआ दिख रहा है।

इन सेलफो में कुछ वस्तुएं रखी हुई है।

यहां फॉल सीलिंग भी दिख रहा है।

यहां शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां ऊपर बैनर पे बोकारो एयरपोर्ट लिखा हुआ है।

यहां ढलाई के लिए लोहे बिछाए गए हैं।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिख रही है।

यहां गेज भी लगा हुआ है।

फेसियल फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

छे स्कूटीया भी यहां लगी हुई हैं।

इस दृश्य में एक रेलगाड़ी दिख रही है।